और यहाँ पे न्यू न्यू टेक्नोलॉजीस के मोबाइलस वगैरह भी अवेेलबल है एण्ड बहुत कुछ अवैलबल है यहाँ पे --

ये कोई कैफे हैं और यहां पे बहोत सी चीजे मिलती है खाने के लिए अवेलेबल --

अ औ बहुत सारे यह है क्या बोलते हैं यहाँ पे लाइट्स भी बहुत सारी अच्छी आ रही है ।

और यहाँ पे नीचे कुछ एक घास बगैरा है नीचे ट्रैक है ट्रेन का ।

बाहर एक डोर है बैठने के लिए बाहर वेट करने के लिए एक चेयर है ।

ये एक मैराथन रेस का ट्रैक है जहाँ पे चार लड़कियां रेस लगा रही है और भाग रही है।

ये एक बारबर की शोप हे और यहा पे लोग बाल काटने आते है ए के --